ये किसी क्रिश्चियन के अ फंक्शन्स का फोटो है जहा पे एक व्हाइट कलर का बड़ा सा टेंट लगाया हुआ है उसके अंदर कुछ डिस्प्ले मे होगा वहा बहुत भीड़ है।

यह फोटो किसी इंजीनियरिंग साइट की है जहा पे एक इंजीनियर जेसा आदमी सारे काम को देख रेख कर रहा है यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स है जिनकी अभी ढ़लई होनी हैं |

और वो बहुत ही इन्जॉय कर रहा है खुद को उसने इसी दौरान यहा --

और वो दूसरे हाथ से सेल्फ़ी ले रहा है और उसके पीछे शीशा है जिसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

ये किसी मार्केट की फोटो है जहा पे ढेरों दुकान हैं और ये शाम के टाइम की फोटो है।

और यहां पर ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा लगी हुई है ये शायद किसी रेलवे स्टेशन की है फोटो यहां से लोग उतर रहे हैं और ई-रिक्शा लेके इधर-उधर जा रहे हैं।

इसमे एक आदमी है जो कि रोड नापने वाले इक्विपमेंट लेके रोड को सीधा सीधा देख रहा है वो शायद इंजीनियर होगा बट उसने चप्पल पहन रखी है उसने रेड कलर की शर्ट व्हाइट कलर की पैंट पहनी है।

ये कीसी साइट की फोटो है जो की हमारे पूर्वजों की मुग़ल की साइट ह क्योंकि इसमें बहुत ही मुग़ल की आकृतियां बनी हुई हैं बहुत सारे दिवाल मगर यहाँ पे जर-जर हो गए हैं।